जो बिल्डिंग है वों सफ़ेद और लाल रंग की और जो इसका गेट है वो काले रंग का यहा पे एक लाईट का खम्भा भी है लाईट के वायर भी जा रहे है और एक--

साइड से प्लेन से नजारा खीचा गया हुआ है नीचे की जो जमीन है वह ब्राउन रंग की सी और उस तरफ एक थोड़ा सा तालाब है और पेड़ भी है और--

उस तरफ जो है कई सारे तालाब से नजर अ रहे है और उस तरफ जो है दूर कई सारे पेड़ है हरियाली है शीशा लगा हुआ है प्लेन का।

और एक डार्क और पर्पल रंग की है सफेद और गुलाबी रंग की वहां पर एक गाड़ी भी लगी हुई है वो लगी हुई है वह गाड़ी है सफ़ेद रंग की आगे थोड़े लोग भी खड़े हुए है और लाइन से पेड़ लग हुए है हरे रंग के आसमान जो हैं नीला हैं बादल जो की सफेद है

तरफ बैठने का भी ये है और वहां बैठने का यह है और उस तरफ ऊपर जो है एक अ-ब्लू नीले रंग का बोर्ड मारा गया हुआ पेड़ है हरे रंग के दिवाल--

पेड़ लगाए गये है सो के लाइन से हरे रंग के है और वहाँ जो दीवाल है वो पीले रंग की है और उस तरफ जो दीवारे है नारंगी रंग की है सफ़ेद रंग की यह बिल्डिंग है।

यहाँ पे एक लड़का कोई खड़ा हुआ भी है नीले रंग का टी-शर्ट पहन कर और सो के पेड़ है हरे रंग के।

वे हरे रंग के है लाईट का खम्भा है और सफेद रंग की लाईट है और उस तरफ जो एक पेड़ है उसे सफ़ेद और लाल रंग से पेन्ट किया गया है और उस तरफ जो है बाउंड्री है सफेद और लाल रंग की--